एक चर्च है जो चर्च के अगल बगल पेड पड़े हरे भरे हैं और ये चर्च क बहार एक ऐ बारे सा मैदान है जिसमे हरे घास जमे हुए हैं।

एक बड़ा हॉल है जिस हॉल में हैप्पी क्रिसमस ये बनाया गया है और हैपी क्रिसमस के लिए लाइट और हर प्रकार के गुलदस्ते फूल भी रखा हुआ है।

एक बड़ा गैरेज हॉल है जिस गैरेज हॉल में रखी हुई है और गाड़िया रखी हुई है और एक और अगल-बगल हरे पेड़-पौधे--